करते है दिखने में बहुत अच्छा दि--

लगा हुआ है --

साड़ी क्लोथ होटल क्लोथ्स सेम --

और ये साइंस कोलेज है।

वे अपने कामगारों को बता रहा है।

कॉम्पेटिशन है जो क्लासिकल और वेस्टर्न --

तमन्ना रखते हैं यहाँ पे जाके।